छोटे बच्चे लेडिस जेंट्स औरत --

और ग्राउंड के बगल में बहोत अच्छी अच्छी पेड़ हैं।

ये कोई करने वाली गाड़ी की इंजन को खोल दिये हैं।

बैडमिंटन खेलने वाली ग्राउंड है। इसमें लाइट भी लगी हुई है। बहोत प्लेग्राउंड है। यह--

बहुत बड़ी कंपनी है लग रही है जिसमें वो --

जिसको बॉउंड्री से घे रखा गया है।

इसमें बहोत सारे कपड़े लगे हुए। टंगे हुए हैं।

ये कोई दुकान में है। पेठा लग रहा है।

है दादा जी है जो उसको रिपेयरिंग कर रहे है। उसकी --

बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिम में।

जो मशीन को कसने में बनाने में तैयार करने में काम आती है नट --